यहाँ एक गाड़ी दिखाई दे रही है गाड़ी का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है ऊपर दीवार दिखाई दे रही है दीवार का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है दो आदमी खड़े हुए नज़र आ रहे है उन्होंने सफ़ेद रंग--

यहाँ एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि जिम करता हुआ नज़र आ रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है जमीन का रंग भूरा नज़र आ रहा है।